इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे व बादल दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बोर्ड भी लगे हुए है जिन पर कुछ लिखा हुआ है।

ये तस्वीर है इसमें बहुत सारे बांस आड़े टेढ़े लगे हुए हैं।

इसमें छत पर कुछ लकड़ी की चीजे लगी हुई है।

इसमें किसी चीज की सजावटे की हुई है।

इसमें कुछ डिजाइन के सामान रखे हुए है।

यह एक मछली की व मुर्गे की दुकान है।

यह एक मस्जिद की तस्वीर है इसमें --

इस मैदान में कुछ कारें खड़ी हुई है।

इसमें कांच के शीशे लगे हुए हैं इसमें दीवार पर कुछ लटके हुए हैं।

इसमें बहुत सारे लोग है इसमें बहुत सारी गाड़िगाड़ियां खड़ी हुई है।

इसमें उस पेट्रोल पंप पर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।